ये लम्बी बस और कार खड़ी हुई है और आगे कुछ पेड़े दिख रही है ऊपर नीला सफेद आसमान--

अं बेंगनी और सफेद फूलों की मालाएं लटकी हुई है और एक महिला खड़ी है जो रंगीन स्वेट --

नीचे कुछ पेड़ लगे हुए हैं एक नीला कचड़े का डिब्बा है सामने एक ठिल्लिया है जिसमें अंदर बहोत सारे ड्रम रखे--

है और बगल में बालकनी बनी हुई है नीचे एक काला बोर्ड लगा हुआ है जिसपे शांति--

तीन बलब लगे हुए हैं दो ऑरेंज बीच का बड़ा लाल हैं और एक मोटरसाइकल खड़ी हैं जिसकी बगल में एक आदमी--

कलर की है और एक कत्थई कलर की शटर है नीचे रैक बने हुए हैं जीसमें एक मोबाइल दिख रहा --

स्वच्छ सर्वेक्षण दो हजार बाइस में घर पर गीले सूखे कपड़ों को अलग अलग करके रखती--

सामने बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है और एक--

पार खड़ी हुई है जो लाल कलर की है और एक मोटरसाइकिल दिख रही है।

दोनों साइड शेर बने हुए हैं और बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं दूर पीला--

बड़ा लोहे का काला सफेद गेट लगा है जिसके दोनों साइड दीवाल है और दोनों साइड नीचे दीए रखे हुए हैं और--

रखे हुए हैं नीचे बहोत सारी पानी की बोटल रखी हुई है सामने एक टेबिल बनी है जिस पर भी--

टेबिल बनी है जिसमें नीचे पोस्टर लगा हुआ है और साइड में ऑरेंज कलर का स्टॉल दिख रहा है ऊपर एक--